यहाँ एक बड़ी होटल है जहाँ पर बहुत से लोग बैठे हुए हैं।

निचे जमीन पर बहुत सी बच्चे बैठे हैं जो कुछ बना रहे हैं ।

जिसका रंग ऊपर काला और नीचे हल्का ब्राउन है मंदिर --

यहां एक कारखाना है जहाँ पर एक व्यक्ति है।

यहाँ बहुत सारी स्ट्रॉबेरी रखी हुई है।

यह रस भरे होते हैं। अंदर से इनका रंग बैंगनी निकलता है।

डार्क ब्राउन रंग का है ऊपर इसकी बटने सफ़ेद रंग की है।

उसपर एक व्यक्ति शर्ट पर प्रेस कर रहा है।

यह एक बहुत बड़ा भवन है।

यह एक बहुत बड़ा स्कूल है जिसका रंग डार्क ब्राउन है।

खीर ककड़ी गिलखी गाजर बैंगन लहसन --

यह भी एक दुकान हें जो किराने की दुकान हें।

यहाँ पे किताबों की दुकान है जहाँ पर बहुत तरह की किताबें मिलती है।

यहाँ बहुत बड़ा है दो मंजिला है जिसका रंग सफ़ेद है।

यह बहुत बड़ा भवन है। भवन का रंग दो रंगों में है।